सामने कोई झालर जैसा लटका हुआ है जो कि गोल्डन कलर में दिखाई पड़ रहा है पीछे दीवाल पे कुछ फोटके भी लटकी हुई दिखाई पड़ रही है एक घड़ी लटकी हुई है यहाँ पे लाइट ब्लू कलर ग्रीन कलर में जल रही नीचे फर्श ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है।

हमें एक ई रिक्शा दिखाई पड़ रहा है जो की ब्लू कलर का है नीचे बहोत सारे पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं जो की ग्रे कलर में दिख दे रहे है और जो मिट्टी दिखाई पड़ रही है और वो भी ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है पीछे कुछ पिलर बने हुए हैं वहाँ पर रेलिंग लगी हुई है।

साइड में एक सीढ़ी जैसा दिखाई पड़ रहा है नीचे फर्श का कलर ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है।

सामने दो ई रिक्शा दिखाई पड़ रहा हैं जोकी ग्रीन कलर का दिख रहा है नीचे बहोत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जोकी ग्रे कलर मे दिखाई पड़ रहे हैं नीचे कोई घास भी दिखाई पड़ रही है जोकी ग्रीन कलर मे दिखाई पड़ रही है।

सामने एक व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा है जोकि खिड़कियों के ऊपर टंगा हुआ है खिड़कियों पर कांच का ग्लास लगा हुआ है खिड़कियों का बॉर्डर ब्राउन कलर मे दिखाई पड़ रहा है और खिड़कियां बंद हैं सामने एक कमरा दिख रहा है जोकि व्हाइट कलर मे दिखाई पड रहा है साम --

सामने दो टेबल दिखाई पड़ रही हैं जोकि व्हाइट कलर में दिख रही हैं दो चेयर भी दिख रही हैं एक बेग रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है टेबल पर कुछ सामान भी रखा हुआ है जो की किताबे हैं।